और बाइक रुकी हुई हैं तीन बाइक दिख रही हैं पेड़ हैं।

इस पिक्चर में येलो कलर के भी सरगुंडे दिख रहे हैं मिट्टी है।

पिक्चर्स दिख रही है गोल गोल सिल्वर कलर की--

यह एक बैंक है इस बैंक का नेम सिंडिकेट बैंक है।

यहां पे कलर फुल लाइट दिख रही है।

यहां पर रास्ता है मिट्टी लगी हो चुकी है पाइप है।

और बहोत सारे मेल्स यहां पे दिख रहे हैं कुछ खरीद रहे है कुछ खा रहे--

यहां पे सब्जी दिख रही है कुचंदर दिख रहा है गाजर दिख रहा है।

यहां पर नाव में दो आदमी बैठ कर नाव चला रहे हैं। एक सामने की तरफ बैठा है एक पीछे की तरफ बैठा है जो पीछे की तरफ बैठा है उसके हाथ में --

ब्लैक कलर के जींस वाइट ग्लोज है और मशीन दिख रहा है।

फोर व्हीलर यहां पर खड़ी हुई है एक है व्हाइट ग्रे ।